दो पहिया साइ बाइसाइकल मोटर बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

लड़का भी नजर आ रहा है।

यहां हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।

एक लड़के ने संतरी रंग के कपड़े पेहने हुएं हैं और एक ने काले रंग के।

हाईवे का नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिखिया--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

और ऊपर पीले रंग का छाता बना हुआ है जिसमें से पानी आ रहा है।

नील वे सफेद रंग के गुब्बरों से सजावट की हुई हैं।

लॉक्स एंड हार्डवेयर दिख रहा है।

और ये दृश्य बहोत ही खूबसूरत नजर आ रहा हा।

जैसे की मिट्टी के बने कप --

कुछ आयरन स्टील की दुकानें हैं।

टाल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग सफेद वे--

बनी हुई है और इसके पास मे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है जिसके साथ में एक आदमी खड़ा हुआ है और बाहर--

दो इमारतें नजर आ रही है।

एक पुतला मेज पर बिठाया हुआ दिखाई दे रहाहा--